एक बड़ा सा भवन नजर आ रहा है।

उसके ऊपर गुंबद नुमा आकृति बनी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड को देख पा रहे हैं।

जिनपे सफेद रंग के सुंदर फूल खिले हुए हैं।

एक दुकान नजर आ रहा हैं।

एक मंदिर नजर आ रही है।

साथ ही यहाॅं पर कुछ गाड़ियाॅं खड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

एक कमरे को देख रहे है।

हमें कुछ मकान भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

साथ ही कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही एक लोहे की खिड़की नजर आ रही है।

साथ ही यहां पर हमें बड़ा सा कांच का दरवाजा नजर आ रहा है।

ये यहां पर पीपल के भी पौधे दिखाई दे रहे है।

सामने कुछ कमरे बने हुए हैं।

एक बड़ी सी नदी को देख पा रहे हैं।

हरे रंग का एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है साथ ही कुछ जूते नजर आ रहे हैं।